इसमे बडी एक लोहे जंजीर पडी हुई है। उसमे दरवाजे पर फूलों की मालाऐ लटक रही है। दो नीचे कलश बनी हुऐ है कलश के दाऐ बाये स्वास्तिक का चिन्ह बना है।

उसके पास में एक इंजन खड़ा हुआ है। बहुत से बर्तन पड़े हुए हैं। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बिल्डिंग का रंग सफ़ेद है।

यह एक बंद बड़े हॉल सा लग रहा है हॉल के पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है। खम्बे लोहे के लगे हुए है।

हरा-हरा घास दिख रहा है इधर पुरा हरा-भरा नज़ारा है पानी काला-काला है।

और पीछे ए बिल्डिंग सी बनी हुई है। पेड़ खड़ा हुआ है। खम्बे दिख रहें है।

उसके उस तरफ उ लोहे की सीढ़ियां बनी है एक गाड़ी रोड पर जा रही है। लाइट जल रही हैं।

यह एक बहुत बड़ा म्म् बरामदा सा है बरामदे में चार पाँच पंखे लगे हुए हैं एक आदमी खड़ा हुआ है।

यह एक चौड़ी लंबी रोड है | रोड पे बोहोत सारी चार पहिये की गाड़ी खड़ी है गाड़ी के आगे एक मोटर साइकिल खड़ी है।

यह बोहोत बड़ा तालाब है। तालाब में सफेद रंग की बोहोत सारी बदक हुई बदक हैं जो पानी में घूम रही हैं।

यह एक कमरा है कमरे में लोहे की कुर्सियां पड़ी हुई है। गुब्बाड़े है लाल सफेद पीले काले। एक दिवाल पे पोस्टर लगा हुआ है।

उसके ऊपर तार पड़े हुये है। आगे बिजली के तार है। उसके पास मे एक कगज का पोस्टर चिपका हुआ है।